दिवार पे एक बैनर लगा हुआ दिख रहा है दो मोटर साइकिल खड़ी हुई दिख रही है एक साईकिल --

--कैंप में रसी दिख रही है और तीनो छतरियाँ लगी हुई कलर फुल दिख रही है।

बादल दिख रहे है हरे कलर के पत्ते दिख रहे है हरे कलर के पेड़ दिख रहे है एक दिवार दिख रही है।

हरे कलर की पत्तियाँ दिख रही है।

एक आदमी दिख रहा है एक लेडिस दिख रही है एक--

मूर्त अअ न कुछ पक्षी ओन दिखाई दे रहे है एक खिड़की दिखाई दे रही है खिड़की में उजाला दिख रहा है।

और ल लेडीज दिख रही है पिले कलर की मिट्टी दिख रही है एक कच्चा सा चढ़ाओ दिख रहा है चढ़ाओ पे कुछ कज्जी लगी हुई दिख रही है।

ब्लैक कलर की एक पलेट रखी हुई दिख रही है पलेट में डिशेस रखी हुई दिख रही है।

और कटोरी मे हरे कलर की चटनी दिख रही है एक अ स्पून रखे हुए दिख रहे है ब्लैक कलर की एक प्लेट दिख रही है।

आसमान दिख रहा है कुछ टहनिया दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की--